यह एक स्‍टेट है और ये बहुत सुन्‍दर लग रहें हैं और इसमें बहुत सारे फूल है बहुत सारे सजावट किए हुए है बहुत कलरों से।

लाल कलर का फूल है वाइट कलर का फूल है ब्लु कलर का फूल है और इसमे दो कुर दो कुर्सिया भी है इसमे इसमे क्या बोलते गमला भी है गमला मे फूल का पौधा भी लगा हुआ है।

ये एक व्यायामशाला है और इसमें व्‍यायाम करने वाली बहोत सारी चीजे हैं और इसमें बहोत सारे पेड़-पौधे भी है और इसमें बच्‍चे भी हैं जो कुछ व्‍यायाम कर रहे हैं कुछ बैठे हुए भी हैं और इसमें एक मंदिर टाइप का भी घर है और बहोत दिखने में बहोत अच्‍छा लग रहा है।

नीचे कपड़ा का दुकान है और दोनो साइड में कपड़ा का ही दुकान है और दो ठो बाइक है और एक आदमी बाइक में बैठे हुए बाइक चला रहा है और उसके बगल में भी दुकान ही है और उसके ऊपर में ऊपर में घर है और उसके उ सबसे ऊपर बरेंडा है।

यह एक बगीचा है और इस पे बहोत हरे-भरे लंबे-लंबे पेड़ भी है और यहाँ पे एक घर भी है और एक बाइक खड़ा हुआ है और एक सीढी भी दिखाई पर रहा है।

यहाँ पर दो गधे दिखाई पड़ रहे हैं जिसके चार पैर हैं।

ये आगे में मैदना है बहुते हरा कलर का घास उगा हुआ है।

क्यों एक यहाँ पर एक झरना है और यहाँ पे चार आदमी हैं और एक बैठे हुए हैं।

और यहाँ पे पानी हरे कलर का है और यहाँ पे एक बाइक भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर है।